यहाँ पे बहुत सारे डोरमेट रखे हुए हैं सब कलर्स सब डिजाइन के ये डोरमेट कलरफुल है और बहुत सारे हैं।